और मैदान में है बहुत तरह का पेड़ है डंटा--

एक फूटफाट के फल का दुकान है छत्ता ऊपर से तना हुआ हैबरसात को लेकर के --

एक तो मैदान है गढ़हा है और पेड़ है साइड में भैंस है ।

हरा आसमानी ऑरेंज उजला --

अव वाइट कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है और उसी कलर का पेंट पहना हुआ है लाइट लगा हुआ है यहां जिम का समान रखा हुआ है।